रूम्स है बहुत अच्छे हैं और वहां पे अ लोग रहते हैं।

यहां पे एलईडी दिख रही है और वहां पे ग्रीन कलर का दिख रहा है वहां पे स्टाइल हुई है।

जैसे कि कोफी की दुकान दिख रही है वैसी दिख रही हूँ।

यहां पे नृत्य कर रही है क्योंकि चौदा फरवरी दो हज़ार बारह को कोई नु नृत्य हुआ था।

यहा पे दो है औरतों की जो की नृत्य कर रही है उनका हर चीज दिख रही है।

ई ऊपर लेके जा रहा हैं एक ऊपर ले लेके जा रहे हैं और एक भरे --

यहां पे मंदिर है जो की मंदिर दिख रहा है भोलेनाथ का और अंदर एक वूमेन खड़ी हुई है जो की पिंक कलर की और एक आदमी भी खड़ा है वहां --

और एक इंसान जा रहा है वहां से बहुत सारे इंसान है वहां पर खड़े हुए हैं जो की जा रहे हैं आ गए हैं।

गेलरी है वहां पे देखना है कुछ ऐसे बहुत सारा ग्राउंड है बहुत अच्छा दिख रहा है ना --

हां वहां पर बहुत सुनसान रोड है वहां पर लोग आते जाते नहीं दिख रहे हैं बट अ सुनसान गल्ली दिख रही है।

वहा रेल्वे स्टेशन पे गाड़ी खड़ी की है वहाँ पे आ आकाश है ऊपर और बहुत अच्छा दिखा रहे है।

पर वहाँ पे जो कि है लोखंड के टीन डाले हुई हैं और अ वहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई है पिक की हुई है शायद ही --

हुई हुई गाड़ी गाड़ी --

हवाएं वहां पे पूरा पानी है नीचे देखो समुद्र ही मतलब बहुत बड़ा है।

शेविंग करने आते होंगे बहुत अच्छे से शेविंग कर रहे है एक आदमी है दो आदमी हैं जो कि शेविंग कर रहे हैं।

कहीं बहुत अच्छा दिख रहा है वहां पे देखो और विंडो दिख रही है डोर दिख रही है अ --

यहाँ पे फोर व्हीलर हैं ये वाइट कलर की वहाँ पे जो कि गारडन के पास जा रही हैं वहाँ --

यहाँ पे देखो शादी के लिए सूट है वहाँ पे बहुत अच्छे हैं।

देखो ब्लैक एंड वाइट जैसा आकाश दिख रा है नीचे भी ब्लैक एंड वाइट जैसे ही दिख रा है वहाँ पे थोड़ा-थोड़ा ग्रीन कलर का दिख रहे हैं जो कि बहोत अच्छा दिख --

अ कुछ सर बता रहे हैं उनको कॉपी --

देखो ये गाड़ी कितनी अच्छी दिख रही है और वहाँ पे देखो उसके चे --

वहाँ पे पढ़ाई कर रे उर्दू की पढ़ाई कर रहे हैं उनके सर में --

ओ वहाँ पे वेट हैं --